यहाँ काफी बड़े-बड़े पेड़ भी है। यहाँ पर एक मैदान हैं। इस मैदान में छोटे-छोटे घास भी है। यहाँ पर एक पूल बनाया हुआ है।

ये लड़किये के तरह के कपड़े पहने हुए है यहाँ पर लड़की सभी बैठी कुछ खड़ी भी है ।

यहाँ पर सभी मछली बेच रहे हैं यहाँ पर मछली को काट कर भी बेचा जाता हैं यहाँ एक बर्तन में पानी है ।

यहाँ पर गेट के बाहर काफी सारे फूल के पौधे हैं यहाँ पर टाइल्स लगाया गया है यह जगह काफी सुन्दर भी है।